चट्टान को चीरते हुए एक झरना तेज गति से बह रहा है।

यह एक मार्केट है जहाँ पर व्यक्ति घूम रहे है।

एक रास्ता है रास्ते पर बहुत सारे व्यक्ति इधर उधर जा रहे है।

अम्ब्रेला के नीचे चेअर व टेबल रखी हुई है इसके थोड़ी ही दूर पर बहुत से पेड़-पौधे लगे हुए है।

यह एक स्विमिंग पूल है।

यह एक रिवर है जिसके ऊपर बहुत सारी नाव तैर रही है।

चट्टानों के कारण नदी का प्रवाह बहुत कम हो रहा है।